अउ हमु मन काम करथे ऐसने आ ऊ बहुत बढ़िया घर बनी हर मिस्त्री मन रथें बनाथे मस्त।

अब घोड़ा मन ह दिखत है एमा घर हे आ के सु जाथे।